छोटा सा ऑफिस दिख रहा है यहां पर दो लोग बैठे हुए हैं एक लेडीज जेंट्स दिख रहा है बैठा हुआ और पीछे पेंटर आया हुआ है साकिल दिख रही है पे सा पेंटिंग किया गया पीछे --

प्रॉपर लाइटिंग दिख रही है और ये शाम का टाइम लग रहा है अच्छा डेकोरेशन किया गया है ऊपर सजावट की गई छज्जा के ऊपर से सामने काउंटर पर लाइट दिख रही है बड़ा सा और प्लेट एंड गिलास भी सजाया गया है।

जो कोई ऑफिस दिखती हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं और बहुत सारे बाइक भी दिख रहे हैं बाहर ठहरे हुए हैं कुस लोग बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं कुस लोग ठहरे भी हुए हैं।

किचेन का रूम का हॉल दिख रहा है ये किचेन रूम दिख रहा है और बा ब ब ब बास्केट कुछ सामान भी दिख रहा है खाने के लिए --

कोई ऑफिस दिख रही है यहाँ पर किस डॉक्टर की ऑफिस दिख रही है ये ऊपर पर ए_सी लगा हुआ दिख रहा है।

और ऊपर छोटा टेबल फैन में दिख रहा है और और टी_वी भी दिख रही है और दीवारों पर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं दो टेबल फैन दिख रहे हैं।

धाबा दिख रहा है बड़ा आ आ सा यहां पर कोई नहीं दिख रहा है कुर्सन बहुत सारे दिख रहे हैं टेबल भी दिख रहा है और काउंटर भी दिख रहा है यहां पे।

ये थोड़ा सा रेस्टोरेंट रहा है यहां पर लोगों का खाना खाते हैं बहुत सारे काउंटर दिख रहे हैं और बहुत सारे टेबल दिख रहे हैं जो काले कलर के दिख रहे हैं।

एक पेट्रोल पंप दिख रहा है यहां पर एक आदमी ठहरा हुआ है और ये शाम का टाइम लग रहा है दो पेट्रोल पंप दिख रहे हैं साम एक फिर चेक दिख रहा है।

और वो एक आदमी ठहरा हुआ है यहाँ पर और ये शाम एक टैम भी दिख रहा है और ऊपर लाइटिंग भी दिख रही है और आजूबाजू खंभे भी दिख रहे हैं और खंभे की लाइटिंग भी चालो दिख रही है और सामने एक शायद बस ठहरी हुई है उसदी कलर की।

पीछे किसी का घर बना जा रहा है जो अभी काम बाकी है घर का और घर के आ आ बाहर एक को अ अ लवे का दरवाजा भी लगा गया है बाहर कट्टा भी दिख रहा है दो बच्चे बैठे हुए घटते के बार।

एक बच्चा सामने देख रहा है और बच्चा फोन पर बात कर रहा है और अच्छा खासा दिख रहा है घर बड़ा सा दिख रहा है घर ये --

और दीवारों पर की ए_सी भी दिख रही है और माशीनां भी दिख रही है कुछ उ और बैठने के लिए कुछ टेबल भी दिख रहा है और बाजूमपे खिड़की भी दिख रही है और खिड़की बाजूम पर्दा छोड़ा गया है।

एक छोटी सी कोई मेडिकल दिख रही है यहाँ पर आजूबाजू कुछ खाने के लिए डब्बे में सामान में दिख रहा है और पीछे खिड़कियाँ में कुछ बोटल दिख रहे हैं मेडिकल के दवाई आवई दिख रहे हैं।

काउंटर के ऊपर कुछ पेपर दिख रहा है और कैंची भी दिख रही है और कुछ चीजों लटकाए गए है। एक बच्चा भी ठहरा हुआ अंदर--

और अंदर कोई नहीं दिख रहा है बहुत सामान दिख रहा है दुकान में बहुत सारे पोर्लिंग लटके भी दिख रहे हैं और बाहर बैठने के लिए कट्टा भी दिख रहा है।

अ कोई छोटी सी कंपनी दिख रही है ऊपर बोर्ड भी लगाया गया दिख रहा है दो बोटन दिख रहे हैं उस बोर्ड के ऊपर एक फैन भी उतर दिख रहा है एक आदमी की फोटो अ अ भी उतरी हुई।

बड़ा सा गार्डन दिख रहा है यहां पर लंबी सड़क दिख रही है अंदर जाने के लिए और गेट भी दिखा रहा बहुत बड़ा सा और ये आज झाड़ दिख रहे हैं नारल के लंबे-लंबे।

कुछ छोटे पौधे भी दिख रहे हैं गुदस्ती में लगाए गए हैं और छोटे पौधे भी दिख रहे हैं और बाजू में कुछ बेड कट्टा भी दिख रहा है।

मोटर के ऊपर फूलों का हार पहनाया गया है और पर फैन भी दिख रहा है और लाइटिंग भी चालू दिख रही है और सीढ़िया में पर जाने के लिए।

कोई जिम नहीं है यहां पर लोग अपनी बॉडी बिल्डर बॉडी बनाने के लिए आते हैं एक बच्चा जिम कर रहा है।

ये छोटे से बुक स्टोर की दुकान दिखती है यहां पर बहुत सारे दुकान दिख रहे हैं कुछ लोग बाहर ठहरे हुए हैं और ऐसे ही आए हुए हैं और पर दिख रहा है दुकान के अंदर।

छोटे से तालाब की फोटो दिख रही है यहां पर आज बाजू का दिख रहे हैं और इस तालाब में बता को तिल तिल रहा है खेल रहा है।

दो बादकों दिख रहा हैजो पानी में गिर रहा है अच्छे खासे दिख रहा हैसामने दिख रहा हैपीछे दो दिख रहे हैदो काले रंग के दिख रहे और एक उदा रंग का गहरा है।

सामने काउंटर के सामने एक हिसाब किताब करने का दिख रहा है सामान और काउंटर के ऊपर बहुत सामान दिख रहा है एक आदमी पर एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है।

बॉक्स के अंदर बैग दिख रहे हैं दो कुर्सियां दिख रहे हैं अंदर और बहो किरगाने साथ क्या ए_सी भी खिड़कीयां भी दिख रहे हैं।

जेवलर की दुकान दिख रही है जो लड़के और के लिए जेवल चाइनो सब कुछ खरीदते हैं।

छैना दिख रही है औरतों केजो बॉक्स भी पैक दिख रहे हैजो अलग बैठी हुए है वो औरत का हाथ दिख रहा हैऔर टेबल दिख रहा है साइड मेंऔर छैना पैकेट से दिख रहे है।

किसी का घर दिख रहा नहीं यह किसी का कार मैकेनिक का कारखाना दिख रहा है और यहां पर एक कार आगा ठहरी हुई है और सामने बोट भी लगाया गया है।

और इस कारण के अंदर बहुत सामान दिख रहा टायर एक मशीन दिख रही है और बाजू में भी बहुत सारे टायर दिख रहे हैं।

स्कूल के बहार घासो वगेरा है कुछ झड़े बी दिख रहे हैऔर पीछे बी झाड़ा दिख रहे हैअच्छा सा बड़ा सा स्कूल दिख रहा हैबच्चों का स्कूल दिख रहा है।

होटल दिख रहा है यहां बहुत सारे आकर बहुत सारे लोग खाना खाते हैं और बड़ा बहुत सारे कुर्सियां दिख रहे हैं बहुत सारे काउंटर भी दिख रहे हैं।

बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं यहां पर बड़ा सा मैदान है दिख रहा है ये और मैदान के पास छोटे से घास भी उगी हुई है बहुत सारे लोग यहां पर ठहरे हुए हैं।

पीछे एक दरवाजा दिख रहा है खुना सा दो बच्चे से एक कट्टा दिखा सामने।

और एक गाट्टे के ऊपर दो दो बच्चे देख रहे हैं फोन में बैठे-बैठे और में जा रहे हैं।

आदमी बैठा हुआ है टेबल के ऊपर और काला शर्ट पहनने का और शाम का टाइम दिख रहा है यहां पर।

गुब्बारे दिख रहे है और एक टीचर है कुंटे बरा कारको कुछ बोल रहा हैमाइक में अबिचित अबिछुड़वे अच्छे खासे।

बहुत सारे पत्थर भी दिख रहे हैं ये शाम का टाइम लग रहा है मगरिब का टाइम लग रहा है बहुत सारे लोग यहां पर जा रहे हैं।

हॉस्पिटल दिख रहा है यहां पर देख बच्चा सामने बैठा हुआ दिख रहा है बच्चा और एक बच्चा चल रहा है पर फैन भी दिख रहा है खेड़ के हमें दिख रहे हैं।

कुछ छोटे कुछ बड़े जना दिख रहे हैं अच्छा खासा बड़ा सा मैदान दिख रहा है और बाजू में बहुत बड़ा बंग बट दिख रही है।

ये भी दिख रहे हैं यहां से बाद बहुत सारे दुकान दिख रहे हैं जो बंद हो चुके हैं और डबल माला दिख रहा है बाज में कंबा भी दिख रहा है।

किसी का किसी फैक्ट्री में काम चल रहा है बहुत सारे मिश्रा है यहां पर जो बोरे में मट्टी भरकर ऊपर अटकाकर बोल से ऊपर चला रहे हैं।

कुछ लोग नीचे काम कर रहे हैं कुछ लोग ऊपर काम कर रहे हैं बहुत बड़ी फैक्ट्री दिख रही है।

कोई छोटे से टाइम के फोटो दिख रहे हैं यहां पर बच्चा यहां से वहां तक जा रहा है और पत्थर लेंस रखे हुए दिख रहे हैं सामने भी दिख रहे हैं पीछे भी दिख रहे हैं।

ये जेंस पार्लर दिख रहा है यहां पर जेंस की कपड़ों की दुकान दिख रही है ये बाहर पोस्टर लगाया गया है।

घर दिख रहा है शामे और शाम का टाइम दिख रहा है और घर के अंदर घर के अंदर बड़ी सा खंबा भी दिख रहा है और बंद दिख रहा है।

छोटा सा दुकान दिख रहा है यहां पर बच्चों को खिलौने की दुकान दिख रही है बहुत सारे बच्चों के खिलौने दिख रहे हैं यहां पर बैड प्लास्टिक के प्लास्टिक के गन प्लास्टिक के बॉल .